वो कथई रंग है कुर्सियों के ऊपर गुलदस्ते रखे हुए है अ कुछ लम्बे - लम्बे पेड़ है जो उनपे लाइटे की सजावट है पिले रंग के परदे है।

सड़क के सड़क के ऊपर कुछ कार खड़े हुए है जो सफ़ेद और काले रंग के है एक बोर्ड लगे हुए है जिसके ऊपर श्री संतोष सर्वेसिंग सेण्टर कार धुलालो लगा हुआ है।